और यहाँ सामने कुछ बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स भी हैं ।

यहाँ एक दिवार है जिसपे नेशनल वॉर मेमोरियल का --

सामने से लाइट जल रही है ।

खम्भों पर लाल कलर की डिज़ाइने बनाई गई है।

और छोटे-छोटे घर मकान भी नजर आ रहे हैं ।

और छोटे सूखे पेड़ भी है ।

कुछ पन्निया सफ़ेद है और कुछ पन्निया रंग-बिरंगी है | पन्नियों को रंग-बिरंगी रस्सियों से बांधा गया है।

एक आदमी ने अपने हाथ में हेलमेट फसा रखा है ।

सामने एक औरत बैठी हुई है और एक औरत झ हाथ में झोला लिए खड़ी हुई है।

सामने जमीन कच्ची है। चारो तरफ छोटे-छोटे घांस है।

और दीवार पर भी एक पेड़ लगा हुआ है ।

पेड़ की डण्डाल काफी पतली है।

एक आदमी बाइक पर बैठा हुआ है सामने एक औरत बुरखा पेहेन कर --

गमलो के अंदर छोटे-छोटे पौधे लगे हुए हैं ।